दिख रहा है बिल्डिंग काफी बड़ा दिख रहा है बिल्डिंग का पेंटिंग कलर जो है वो वाइट कलर से किया गया है और यहां पर गेट दिख रहा है गेट का जो है वो फिरोजी कलर दिख रहा है।

पर आस पास में भी यहां पर काफी तरह का कलर किया गया है कुछ ग्रीन कलर है कुछ रेड्स कलर है पेंटिंग किया हुआ दिख रहा है और ऊपर भी काफी सारी डिज़ाइन बनाई हुई दिख रही है।

बिल्डिंग में कुछ खास दिख रहा है जो नीले कलर का दिख रहा है और एक यहाँ पे कार दिख रही है व्हाइट कलर की दिख रही है और यहाँ पे खाफी सारे पेड़ दिख रहे जो हरे कलर के दिख रहे है कुछ मिट्टि दिख रही है।

व्हाइट कलर का दिख रहा है ब्लू कलर में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है और काफी सारी बिल्डिंग दिख रही है और आसमान दिख रहा है आसमान का कलर जो है ब्लू वाईट कलर दिख रहा है।

बिल्डिंग दिख रहा है और बिल्डिंग काफी बड़ा दिख रहा है और बिल्डिंग में अलग-अलग पेंटिंग की गयी है और ऊपर बिल्डिंग पे बल्ब जलते हुये दिख रहे है काफी सजावट की हुई बिल्डिंग दिख रही है और यहाँ पर बिल्डिंग का पेंटिंग कलर व्हाइट दिख रहा है यल्लो कलर ।

यहाँ जो पेंटिंग कलर जो है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पर एक ऐ_सी लगी हुई दिख रही है और यहाँ पे खाफी अच्छे से सजावट की गयी हुई दिख रही है और उपर यहाँ पर बल्ब अलग अलग कलर के जलते हुये दिख रहे है।

ये बिल्डिंग का पेंटिंग कलर जो है येलो ग्रीन दिख रहा है और ऊपर जो बना हुआ है वो हेड ग्रीन कलर का दिख रहा है काफी बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है यहां पर छोटे छोटे कुछ विंडोज दिख रही है और यहां पर पेड़ दिख रहा है पेड़ हरे कलर का दिख रहा--

दिख रहा बिल्डिंग काफी बड़ा दिख रहा है बिल्डिंग का पेंटिंग अलग अलग कलर से किया गया है कुछ रेड यल्लो से किया गया है काफी सारे बल्ब जलते हुई दिख रहे है कुछ यल्लो कलर से दिख रहा कुछ व्हाइट कलर दिख रहा है और एक मेड बिछा हुआ दिख रहा है नीचे मेड ब्लू कलर का दिख रहा है।